यहां इनमें दवाईया रखी गई है और तीन आदमी खड़ा हुए है एक आस एक आदमी इधर मुह करके देख रहा--

ये वैन ऊपर लटकी है और टायर दिख रहा है।

एक आदमी बेठा हुआ है बोरी दिख रही है और जमीन पे फूल पड़ा हुआ है और एक आदमी खड़ा हुआ है वो फूलों को रहा है।

यहां कुछ वैन खड़ी हुई है और कुछ लोग साइकिल से जा रहे है ऑटो खड़ा है ऑटो खड़ा हुआ है सब बाइकें खड़ी है।

यह हैना बड़ा हॉल है और हैना पिलर दिख रहे है कांच की कांच की खिड़किया दिख रही है दो कुं कुंडिया लगी हुई है लाइट दिख रहा है दो गेट दिख रहे हैं।